और ये अनेकों प्रकार के डिजाइन किया हुआ है जो छोटे जाति बनाते है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के सामान को रखा जा सके जैसे फूल ई.टी.सी. ।

आगे एक उ-उ टंकी पानी का है जिसके अंदर मगरमच्छ जायेगा | साइड में एक चार-पांच बोल्डर रखा हुआ है जिससे उसे दिक्कत न हो| ये एक-एक करके रखा जाता है।

इसमें ये शादी हॉल है जिसके अंदर बहुत सारे कुर्सी लगे हुए-- हैं।

दो वृक्ष है जिसके साइड में बहुत हरे-भरे घास दिखाई पड़ रहा है एक कचरा दानी है जिसके अंदर कचरा डाला जा सकता है और दो चेयर दिखाई पड़ रहा है जो अनेकों कलर के हैं।

ये शादी भवन है जिसके अंदर बहुत सारे उम्म लगे हुए हैं व्हाइट कलर के बेडशीट लगे हुए है बहुत बड़ा है।

जैसे व्हाइट कलर के कपड़े हैं लाल कलर के हैं ब्लू कलर के हैं। छोटे मैन के लिए हैं और बड़े मैन के लिए हैं अनेकों कपड़े रखे हुए हैं।

--और नीचे पानी लगा हुआ है पानी के ऊपर लत्ती-लत्ती के ऊपर यह यह अपना चारा कर रहे है जो मछली पकड़ रहे है जो साईड में कोई वृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है।

अमरूद का पेड़ का अमरुद तोड़ा हुआ है नीचे पेड़ लगा हुआ है ये नर्सरी है जिसके अंदर बहोत सारा वृक्ष रहता है साइड में बहोत सारा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे बहुत सारा सब्जियां दिखाई पड़ रहा है और एक मेन है इसके अंदर केला है।

ये झरना है जो कि पहाड़ों से झरना गिरता है साइड में बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा है जो काला घना है।

ये बहुत सारे चेयर रखे हुए है जो ब्लैक कलर के है साइड व्हाइट कलर के देवाल है नीचे नीचे संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है।

डेकोरेशन है डेकोरेशन किया हुआ है आगे फुल के दो डेकोरेट रखा हुआ हैं बहुत अच्छा से लाल ब्लू व्हाइट से भी डेकोरेट किया हुआ है और लाल कलर के रोल बिछाया हुआ है।